उन लोग के पीछे में एक ठो घर दिखाई दे रहा है।

और आदमी लोग भी दिखाई दे रहा--

और आर्मी लोग भी दिखाई दे रहा है।

और खिड़की में वाइट कलर का कपड़ा रखा हुआ है।

और चेयर लोग भी दिखाई दे रहा है।

और वायर भी डिखाई दे रहा है।

और घर बनाने के लिए अलग सा बीम दिखाई दे रहा है।

यहां में चार छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है।

वाइट कलर का साइन बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

और भी सूखा सूखा दिखाई दे रहा है।

उसमें बहुत सारा किताब रखे हैं।

और एक ठो बैनर दिखाई दे रहा है।

और बॉक्स जो ब्राउन कलर का है।

ये जो एक घर का अंदर है।

ऊपर मे लाइट भी दिखाई दे रहा है।

यहां में जो एक वॉल दिखाई दे रहा है।

और उसमें बहुत सारा सामान लोग दिखाई दे रहा है।

और ऊपर में एक ठो ए_सी दिखाई दे रहा है।